ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है जिसमें तीन टेबल और कुर्सियां लगाई हुई है।

ये एक ए_टी_एम है जिसके ऊपर बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है फेडरल बैंक ए_टी_एम ।

और वहां पर स्कूटीयां बाइक्स भी है और दो लोग भी है।

जिनकी शक्ल नहीं दिख रहे हैं बस टांगें दिख रही हैं।

और वहां पर ये छोटी सी सड़क है जिस पर मिट्टी भी बहुत ज्यादा है।

और ऊपर वहां पर ये पोस्टर भी लगाकर है छोटी छोटी पोस्टर्स ।